यह बड़ा सा गेट बहुत खूबसूरत बना हुआ है सामने के तरफ दो व्यक्ति नीचे रेड कलर के कार्पेट के ऊपर खड़े हुए हैं।

जिम है सामने की तरफ एक बड़ा सा जिम नजर आ रहा है। इसके पीछे बहुत सारे प्लेट्स नजर आ रही है | एक व्यक्ति सामने की तरफ देख रहा है |

बुक स्टेशनरी की दुकान है | सामने की तरफ एक बड़ी सी बुक स्टैटिनरी नजर आ रही है | इसमें चारो तरफ बड़ी सी रेक बनी हुई है इसमें तरह तरह की किताब कापियाँ रखी हुई हैं |

निचे की तरफ इसमे रेड ब्लैक कलार की कारपेट बिछी हुई है | सामने की तरफ एक मिरर लगा हुआ है वॉल पर | इसमे एक चेस्ट मशीन रखी हुई है | पीछे फ्लेक्स लगा हुआ है पीछे केबल क्रॉस मशीन रखी हुई है।

ब्लैक मच्छी है वाइट कलर की मच्छी है कैरट रखी है येलो कलर की जिसमे मछलियां रखी हुई हैं| एक व्यक्ति तराजू-कांटे से यहाँ पर बेच रहा है।

यह एक मस्जिद है | मस्जिद के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने ब्लैक कलर का कुरता पैजामा पहना हुआ है | इसने येल्लो कलर का गमछा डाला हुआ है गले में | इसमें सामने के तरफ ब्लैक कलर का गेट है |

इसकी मेहरावे बनी हुई हैं | इसमें चारो तरफ बलून्स लगे हुए हैं | इसमें रेड कलर के येलो कलर के ग्रीन कलर के वाइट कलर के आसमानी कलर के बलून्स लगे हुए हैं अंदर के तरफ | चप्पलें रखी हुई हैं |

ये मार्केट है | सामने की तरफ एक बड़ा सा मछली मार्केट नजर आ रहा है जिसमे एक टेबल रखा हुआ है | टेबल के ऊपर रेड कलर की कार्पेट बिछी हुई है |

यह एक कार्यालय है | सामने की तरफ एक बड़ा सा कार्यालय नजर आ रहा है | इसमें एक बड़ा सा गेट बना हुआ है | सामने की तरफ एक बड़ा सा रास्ता भी बना हुआ है | इसमें सामने की तरफ एक पार्किंग एरिया है जिसमें स्कूटी बाइक खड़ी हुई हैं ।

सामने के तरफ कुछ यात्री झोला लिए हुए खड़े हुए हैं| ये चारो तरफ यहाँ पे ऑटो ही ऑटो हैं।